डब्लू व्ही सिक्स झिरो लिखा हुआ वेस्ट बंगाल की कार है जिसका गेट खुला हुआ है एक इंसान कार में बैठने जा रहे हैं दो लोग जा रहे हैं वहां से पीछे भी बहुत लोग हैं।

यहां पे सीमेंटेड करके साइड से सीनारी को मजाक से देखने के लिए भी बना हुआ है जो की बहुत सुंदर लग--

मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा ट्रक है जिसमें सीमेंट बनता है सीमेंट को घोरा जाता है इसमें बहुत बड़ा सा बना हुआ पीछे एक आदमी है जो कि वह मशीन चला रहा है।